यहां एक कीरानी दुकान है।

कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

कुछ केतली रखा गया है कुछ बोतल रखा हुआ है कुछ गैस रखा हुआ है नीचे की ओर काफी सारे डब्बे रखे हुए है।

यहां पर आदमी भी दिख रहे हैं।

जे_एन_वी गढ़वा दिखाई दे रहा है।

रोड पे काफी सारे गाड़ी चल रहे हैं एक ट्रैक्टर दिख रहा है।